और एक बिल्डिंग के सामने तीन-चार बाइक खड़ी है और सामने में बहुत बड़ा जगह है।

ये एक बिल्डिंग की तस्वीर है जो बहुत ही खुबसुरत लग रही है ऊपर इसके ऊपर --

और मछली के बगल में कुछ केकड़े भी हैं और आसपास बहुत से बाजार में लोग भी हैं।

और यहां बीच में रेड कलर्स के कालीन बिछे हुए है और सामने एक स्टेज है स्टेज एक पास में एक चेयर्स है और चार-पांच लोग इस हॉल में है।

--और उसके बगल में ही एक बूढ़ा इंसान स्टॉप पर पितल की थाली चढ़ाये कुछ कर रहा है और पास में ही दो आदमी भी खड़ा है।